बहुत सारा लड़की लड़का लोग फोटो क्लिक कर रहा है इसका।

घर दिखाई दे रहा है आसमान व्हाइट व्हाइट सा दिखाई दे रहा है।

और उसमें राइस विद द पोस्ट बैंक तेनाली ईटानगर अरुणाचल प्रदेश लिखकर दिखाई दे रहे है।

यह पिक्चर में बुद्धिस्ट का मूर्ति दिखाई दे रहा है।

टेबल ब्राउन कलर है बहुत सारा टेबल रखे हैं चेयर लाइट ब्ल्यू कलर पूरा लाइन से लगा के हैं।

कलर है ये पूरा दुकान व्हाइट कलर है।

पानी के अंदर में पत्थर लोग दिखाई दे रहा है कोना में बहुत सारा पत्थर है घास दिखाई दे रहा है।

नदी भी दिखाई दे रहे और दूर दूर में घर दिखाई दे रहे पहाड़ दिखाई दे रहे।

यह पिक्चर में एक सुंदर वाला व्यू देखने मिल रहा है जहां पर पूरा फ्रेश फ्रेश नजारा है।

रेड कलर का कपड़ा पहना हुआ है और फ्लावर से बनाने वाला माला पहना के है येलो और रेड कलर से।

टाइल्स वाइट कलर का बिछा गया है नीचे में भी फ्लावर डेकोरेशन कर के है।

राइट साइड में कुछ पाने का सिंटेक्स दिखाई दे रहा--

वॉल पूरा व व्हाइट कलर है ऊपर में भी व्हाइट कलर है।

लोग का और फोटो फ्रेम के बीच बीच में कुछ सामान भी दिखाई दे रहे है।

नीचे में व्हाइट व्हाइट से समान लोग दिखाई दे रहे और गेलन में व्हाइट कलर मे दिखाई दे रहे--

रेड रेड दिखाई दे रहा है सबका घर पिंक और व्हाइट में दिखाई दे रहा है।

पहार ऊपर नीचे करके दिखाई दे रहे इवनिंग का व्यू है।

और डिब्बा दिखाई दे रहा है वाइट कलर में।

राइट साइड में कुकर भी दिखाई दे रहा--

बुक स्टोर का दुकान हैं जहां पे बहुत सारा बुक्स और नोटबुक रखे हैं।

यह पिक्चर में घर दिखाई दे रहा है वाइट कलर का आर_सी_सी ।

बाहर में फ्लावर्स दिखाई दे रहा है ग्रीन ग्रीन से रस्ता दिखाई दे रहे।

जो सामने में एक लड़का है वाइट शर्ट पहन के।

एक कंपाउंड पूरा नीट एंड क्लीन है छोटा छोटा घास लोग दिखाई दे रहा है।

और ऊपर में भी ब्ल्यू कलर है।

ब्लैक कलर में जग है।

ब्लू ड्रेस ड्रेस पहन के है टोपी ब्लू कपड़ा ब्लू ब्लू ।